बुक शॉप है बहुत सारी बुक्स है शेल्फ है बहुत सारे जिन पे अलग-अलग बुक्स है।

पीले गुबारे हैप्पी बर्थडे लिखा है।

यहां से एक साइड से कुछ लड़के खड़े हैं और दूसरे साइड से लड़कियां--

बड़ी सी बिल्डिंग है सामने बहुत सारे रिक्शे हैं।

एक ही जैसे रिक्शे हैं लोगों की बहुत भीड़ है बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बोर्ड लगा है।

गुरुद्वारे में लोग हैं तीन आदमी बैठे हैं गाना बजा रहे हैं।

एक आदमी जो है शॉपिंग कर रहा है दूसरा आदमी भी दिख रहा है दूर से।

और साइड में एक रेल चल रही है ऊपर से तारे हैं।

साइड में सीढ़ियां बना के हैं एक बड़ा डस्टबिन है और सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल लगा के है स्टील की।

दो गाड़ियां हैं दूर से बहुत ही जमीन है जिसमें हरी घास है बहुत सारी पेड़ भी है।

यहां से दूसरी दुकान है लेकिन उसकी शटर बंद है।

साइड में एक बिल्डिंग है और एक दीवार है और बहुत तारे हैं।

यहां से एक आदमी है और पीछे कुछ और आदमी हैं ऊपर लाइटें लगी हैं।

लोगों की बहुत भीड़ है आगे कुछ रिक्शे हैं सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारे आदमी और औरतों की भीड़ हैं।

दीवार पे बड़ी फोटोस लगी हैं एक बैट लटका हुआ है हेलमेट्स लगा के हैं।

एक ऑफिस जैसा है सामने शीशे का दरवाजा है।

चर्च के ऊपर बड़ा सा प्लस बना हुआ है।

बहुत सारे बैलून्स हैं ऊपर बहुत सारे बैलून्स का डेकोरेशन है और--

एक लड़की एक चेयर पर बैठी है उसके सामने टेबल है उस पे उसका बैग है।

बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते हैं छोटे-छोटे जिनमें अलग रंगों के फूल हैं।

यह एक सोसाइटी है सामने बी_ ब्लॉक लिखा हुआ है एक आदमी है उसके सामने साइकिल है वो खड़ा है।

कांदे हैं आलू है करेले हैं।

जिनको ब्लू कलर का कपड़ा लगा के हैं सामने सोफाज़ हैं।

और ऊपर लाइट जल रही है बेड्स के अलग-अलग डिजाइन है एक बेड को फूल बना के है।

एक बड़ा सा टेबल है इसको ऊपर शीशा लगा के है।

पीछे से जो है एक अलमारी जैसी बना के है।

यह बड़ा सा बेडरूम है इधर एक बेड है उसको सफेद बिस्तर है।

एक आदमी के मुंह में कुछ है सामने एक रिक्शा है और दूर भी बहुत सारे रिक्शे हैं।

और आगे बहुत सारे गमले हैं जिनको अलग-अलग फूल लगा के हैं।

सामने बड़ा सा गेट है और साइड में एक छोटा गेट है।